किसी ब्रिज के नीचे से बाहर निकल रहे है यहाँ पे छोटे -छोटे बच्चे है भाईचारे है पुरुष हैं।

छ लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही है और--